यह तस्वीर गोदाम या होलसेल स्टोर को दर्शाती है।

बाई ओर की अलमारी में अभी और हांडास जैसे ब्रांडेड पैकेट भी दिखाई दे रही है।

एक व्यक्ति कुछ कार्य करता नजर आ रहा है।

दुकान की सजावट गेन्दो और फूलों की माला से की गई है।

प्रत्येक व्यक्ति के सामने मोबाइल या लैपटॉप रखा हुआ है।

कुछ आरोगामी भी दिखाई दे रही है जिसमें पक्षी और अन्य आकृतियां दिखाई दे रही है।

दाएं और बेचने की सुविधा के लिए एक सोफा और टेबल रखा गया है।

कक्षा में कई छात्र छात्राएं बैठे है जो अपनी उत्तर पुस्तकों पर कुछ लिख रहे हैं।

सामने एक व्यक्ति ईंटों को उठाता नजर आ रहा है और चारों तरफ हरियाली फैली हुई है।

का फैक्चुअलिटी ऑफ़ कॉमर्स लिखा हुआ है।

इससे यह प्रतीत होता है कि वे कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

निर्माण कार्य में लगे मजदूर छत की ढलाई कर रहे हैं।

मंच पर कई लोग नारंगी रंग की पोशाक पहने हुए नृत्य कर रहे हैं।

मोर के रंग बिरंगे पंख पूरी तरह से फैले हुए हैं।

इस तस्वीर में एक दुकान या गोदाम जैसा स्थान दिखाई दे रहा है।

बीच में एक कुर्सी और मेज भी है।

दाई ओर पुरानी जर्जरित इमारत और एक कच्चा रास्ता नजर आ रहा है।

यह तस्वीर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय नृत्य प्रदर्शन को दर्शाती है।

नर्तकी के पारंपरिक भारतीय परिधान पहना है।

इमारत के बाहर हिस्से पर कांच के पैलन लगाए गए हैं।

मैं सड़क पर भारी भीड़ जमा है।

यह तस्वीर मछली बाजार को दर्शाती है जहां टेबल पर कई प्रकार की मछलियां ताज़ा और साफ की हुई रखी गई है।

लोग अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं।

सामने एक व्यक्ति मंच पर खड़े होकर व्याख्यान दे रहा है।

यह लोग एक निर्देशित एक्सरसाइ या डांस कर रहे है।

बाई ओर एशियन पेंट्स का साइन बोर्ड दिख रहा है।

दुकान के सामने एक नीला गेट बनाया गया है जिस पर वॉलमैक्स लिखा हुआ है।

के बाहर पेंट के डिब्बे भी रखे हुए हैं।

समने गेन्दो के फूलों की माला लगी हुई है जो इसे और आकर्षित बनती है।

यह दर्शाता है कि यह दुकान संभव्वत मछली पकाने से संबंध सामान बेचती होगी।

यह तस्वीर एक फ़ुट ओवरब्रिज की दिख रही है जो संभावत रेलवे स्टेशन या सड़क पार करने के लिए बनाया गया है।

जो किसी धार्मिक या पारंपरिक समारोह के लिए तैयार किया गया है।